इस इमेज में बहुत सारी महिलाएं एक साथ दिखाई गयी है कुछ लड़कियां भी दिखाई गयी है।

इस इमेज में एक बड़े से मंदिर की इमेज दिखाई गयी है मंदिर डेकोरेशन दिखाया गया है ।

इस इमेज में कुछ लोग पहाड़ के नीचे दिखाई गए है पहाड़ के नीचे एक बड़ी सी गुफा दिखाई गयी है।

इस इमेज में हम सेल्फ पर रखे हुए बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाये गए है पोंड्स क्रीम है बॉडी लोशन है।

नीचे गोल - गोल राउंड टाइप का बना हुआ है ये नाईट की इमेज दिखाई गयी है।

ग्रीन बोर्ड लगा दिखाया गया है जिस पर इंद्रावती नदी लिखा दिखाया गया है।